हम देख सकते हैं ये एक बहुत ही सुन्दर-सा बैठने का चिल मारने का रूम है| यहाँ पे कई सारी मैगजीन्स भी रखी हुईं है।

और यहाँ देख पा रहें हैं की यहाँ सामने एक युवक खड़ा है जिसने शूज पहना हुआ है टाई पहनी हुई है एक रात में एक फैक्ट्री के अंदर खड़ा हुआ है उसके पीछे एक मशीन भी है।

यह हम देख सकते है यहा पर मेला लगा हुआ है बहुत अच्छा वाला और यहा पे लोग बैठे हुए हैं।

कर रहे हैं सभी की बैग है चार्ट पेपर है पेंसिल है रबर --